ये एक किराने की स्टोर हैं जहा पर हर तरह का सामान मिलता हैं चाहे वो शैम्पू हो चाहे क्रीम हो चाहे बिस्कुट हो चाहे दालमूट हो चाहे नमकीन हो चाहे ओट्स सभी चीजे यहा अवेलेबल हो जाती हैं।

सब्जी की दुकान जो है तरह तरह की सब्जी बिक रही है जहाँ पर अअअअ गाजर है गोभी लौकी है और डलिया है वहाँ पर--

ये हारमोनियम धीरे धीरे बजाया जाता है। इससे सा रे गा मा पा सरगम चलती है। यहाँ स्कूल में भी सिखाया जाता है म्यूजिक और के लिए लिखा भी जाते है। --

यहाँ जीने बने हुए हैं पूरा ये सिलीमेन्टेड बना हुआ है रेड कलर का बहोत ही अच्छा लग रहा है और बहोत ही प्यारा लग रहा है।